चौड़ाई लग रहा है इ बहुत ही सुंदर गंगा जी है।

हैं की गुलाब एक बहुत ही अच्छा फूल होता है ये लोग --

यहाँ से लोग घूमने के लिए --

ये थ्रेसर है थ्रेसर से देखिए ये किसान है ये किसान दौनी कर रहे हैं थ्रेसर से गेहूं दौनी --